सामने की ओर कई सारे बच्चे ब्रेंच पर प्रोजेक्ट बनाते हुए नजर आ रहे हैं।

नीचे की जमीन पर बेसमेंट पार्किंग है।

ऊपर की हिस्से की दीवार को शीशे से बनाया गया है।

आसपास कई सारे पेड़ और घास उगे हुए भी नजर आ रहे हैं।

किसी की जमीन को गार्डनिंग कैची के हिसाब से सजाया गया है।

यह दृश्य किसी योगा क्लास का है जिसमें सामने की ओर कई सारे लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं।

और नीचे की जमीन को भी सफेद रंग से रंगा गया है।

सामने की और एक खंभा भी नजर आ रहा है और आसमान में बादल बिलकुल साफ दिख रहे हैं।

यह दृश्य किसी डिस्को का है जिसमें सामने की ओर कई सारी महिलाएं डांस करती हुई नजर आ रही है।

यहा दृश्य किसी फूलों का दुकान का है जिसमे सामने की ओर कई सारे फूल और वरमाला लटकाए गए है।

पीछे की ओर पीले रंग के फूल भी नजर आ रहे हैं नीचे की ओर एक मेज पर भी कई सारे फूल रखे हुए।

यह दृश्य किसी सैलून का है जिसका नाम थ्री सिक्सी सलून --

ऊपर के हिस्सों में कई सारी झूमर और लाइटें लगाई गई हैं।

सामने की ओर एक बोरा भी रखा हुआ दिख रहा है और नीचे की जमीन सुरमई रंग की नजर आ रही है।

इस दृश्य में सामने की और एक बहोत बड़ी सही इमारत नजर आ रही है जिसमें इमारत को हरे और सफेद रंगों से रंगा गया--

नीचे की जमीन में कुछ डिब्बे भी रखे गए हैं और सामने की ओर बहुत कई सारे व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

यह दृश्य किसी स्कूल के प्रोग्राम का है जिसमें सामने की ओर एक अध्यापक चीफ गेस्ट भी नजर आ रहे हैं।